यहाँ पर दूर-दूर तक सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है साइड में कुछ लोग भी खड़े हैं और एक नाव भी नजर आ रही--

यहाँ एक बड़े-बड़े पत्थरो की चट्टान नजर आ रही है। यहाँ पे एक नीचे एक आदमी खड़ा है। जिसके कंधे पर बैग है। ऊपर भी एक आदमी खड़ा है। जिसके हाथ मे फोन और कंधे पर बैग है।

बाहर फूलो की लडिया भी लगी हुई है। इसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ है। इसके साइड में एक बस थोड़ी सी नजर आ रही है। नीचे मिट्टी ही ही मिट्टी है। पीछे इसके एक पेड़ नजर आ रहा है।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

सैलून का फोटो नजर आ रहा है| यहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है यहाँ जिसके ऊपर पर्पल कलर का कम-कपड़ा ढका हुआ है उसके सिर में कुछ पिंस लगा रखी हैं।